दिए गए चित्र एक रूम का है जिसमें एक टेबल है।

ये दुकान एक इलेक्ट्रिसिटी शॉप है जिसके अंदर बहोत सारी चीज रखे हुए हैं।

चित्र में बहोत सारे टायर्स दिख रहे हैं।

पिक्चर के दूसरी तरफ कुछ बाइक भी रखे हुए हैं।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

इन रॉड्स के नीचे पाइप्स भी लगाए हुए हैं।

पिक्चर के साइड मे बहुत सारे दुकाने दिखाई दे रहे है।

पिक्चर के आसपास बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

में बहुत सारी पेर पौधे भी दिखाए गए हैं और एक पेड़ के पीछे एक घर भी दिखाया गया है।

पिक्चर के कोने में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

ये चित्र एक दुकान का है जिसमें बहोत सारी चीजें पड़ी है।

के सामने बहुत सारे अलग अलग देवी देवताएं लगे हुए हैं।

इस चित्र में फोटो लिया जा रहा है।

इस चित्र में एक बिस्तर दिखाई दे रहा है जिसमें दो तकिए रखे हैं।

और वहां के टेबल के ऊपर बहोत सारी चीजें रखे हुए हैं।

इस बागीचे के साइड में एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है जो दो तरफा जाता है।

चित्र में कुछ काम चल रहा है रॉड्स के ऊपर।

एक सोफा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक बैग रखा है।

चीज़ों में बाथरूम के सामान रखे हुए हैं।

ये चित्र एक नाव घर का है इस चित्र में एक गेट दिखाई दे रहा है।